यहाँ पर एक बड़ी-सी बिल्डिंग बनी हुई हैं जिसमें काफी सारी शटर हैं और काफी सारी खिड़कियां है येल्लो और वाइट कलर का कुछ कलर इसपे पोता हुआ है और नीचे काफी सारी बाइके रखी हुई हैं बाइके और साइकिलें रखी हुई हैं।